इस पिक्चर में हमें तीन कांच दिखाई दे रहें हैं।

इस पिक्चर में हमें दीवारों पर ड्राइंग्स की हुई दिखाई दे रही हैं।

दूर से हमें एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमे बहुत सारे लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर हमें ब्लू और व्हाइट बैलून से डेकोरेशन भी करती हुई दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर मे हमे हैंडपैड नज़र आ रहे है।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

इस बिल्डिंग में हमें विंडोस भी दिखाई दे रही हैं।

देखने में यहां पर हमें कोई नर्सरी लग रही हैं।

आसपास पेड़ भी नजर आ रहे है।

यहां पर हमें एक छोटा सा टेडी बियर भी दिखाई दे रहा है।

किसी का कलर नीला हरा गुलाबी--

देखने पर हमें लग रहा है।

यहां पर हमें एक छोटा सा रेड कलर का फ्लावर भी दिखाई दे रहा है।

और साथ में हमें एक दवाइयों की दुकान भी दिखाई दे रही है।

यहां पर हमे लोग बोट्स पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें जीसस क्राइस्ट की तस्वीरें और मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर मे हमे एक टेबल और बहुत सारी चेयर्स दिखाई--

इस पिक्चर में हमें बहुत ही बड़ी सड़क दिखाई दे रही है।